और पीने का साफ पानी भी है।

और शराब में धूत होकर नशे का मौज करते हैं।

यह एक पेट्रोल पंप का सीन है जहां पर बहुत लोग ईंधन भरवाने व --

जहां पर बच्चे चित्रकला करके अपना टाइम व्यतीत करते हैं।

यह एक कॉलेज का दृश्य है जहां पे विद्यार्थी पढ़ने व --

लोग खाने व पीने आते हैं यहां पर कई प्रकार की सामग्रियां मिलती है।

यहां पर बहुत भीड़ रहती है कुछ लोग यहां आ कर --

और यहां पर हमेशा ही इतनी भीड़ होती है वह यहां मछलियां भी --

यहां पर पार्किंग की भी व्यवस्था है।

यह एक लाइब्रेरी की जगह है जहां पर लोग आकर --

और उसे निकालने के लिए यहां पर आती व जाती रहती हैं।